बहोत सारी बुक्स दिख रही है कुछ इमेजेस भी दिख रहे हैं एक दरवाजा दिख रहा है दरवाजा शीशे का --

फूल मंडी है इसमें बोहोत सारे फूल हैं हरे पीले नीले ससस फूल हैं ए कुछ लोग बेठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हैं।

आसमान ऊपर दिख रहा है आसमान का कलर नीला है मुझे घर दिख रहे है घर का कलर --

एक शॉप है वर्क शॉप के अंदर बहुत सारे टेबल दिख रहे हैं टेबल का कलर येलो पीला लाल है।

फूल है फूल का कलर लाल है इसके पत्ती है पत्ती का कलर हरा है।

साइड में भी कुछ फूल दिख रहे है फूल का कलर येलो है।

डिश है डिश में चावल दिख रहे हैं सब्जियाँ दिख रहें हैं सैलेड दिख रहा है।

इमारत का कलर ब्लू है नीचे फ़र्श पे मिट्टी दिख रहे है कुछ ईंट भी दिख रहे हैं ऊपर स्काई दिख रहा है स्काई का कलर नीला है।

ये एक रोड है रोड के साइड में एक स्टैचू दिख रहा है सीधे बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग का कलर उजला है।